यह जिम काफी बड़े छेत्र में फैला हुआ है आजकल नवयुवक बहुत ज्यादा जिमजिम को पसंद करने लग गए हैं और एक्सर्साइज़ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए है।